कस्टमर को दे रहा है |

ये सुंदरता को दिखाया गया है।

के बाहर एक छोटी रेलगाड़ी --

वरमाला लिए वे खड़ा है और अपनी वधु को --

कारण बहुत ही सुन्दर है --